पहाड़ का सटा हुआ हैं ऊपर का सेट नहीं गिरा हुआ हैं।

ये एक पहाड़ी इलाका हैं जहाँ में बाहर से छोटा बड़ा पहा पत्थर दिख रहा हैं मिल से पानी जा रहा हैं नदी का छोटा सा--

साइड से एक सीढ़ी आ रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ हैं ऊपर में कोई--

यहाँ एक मंदिर का अंदर का चिंतक हैं जहाँ पर सिक्का साथ सजा हुआ हैं लाइट जला हुआ हैं फूल देखे स--

फाइव कलर का बड़ा सा ठीक ठाक सेट दिखाई दे रहा हैं प्लेटफार्म में यहाँ पे कुछ लाइन दिखाई दे रहा--

एक स्कूटर खड़ी हैं ए गेट के पास एक ग्रीन कलर का ट्रांसमीन हैं यहाँ पे तीन बंदा भी खड़ा हैं।

यहां पे एक बड़ा सा मिट्टी का पहाड़ दिखाई दे रहा है यहां पे बोहोत सैंड पड़ा हुआ है यहां पे एक ग्रीन कलर का कुर्सी पड़ा है।

और प्लेटफॉर्म दो नंबर लिखा हैं पे टू लाइन दिखाई दे रहा हैं लाइन पे अभी कोई ट्रेन नहीं हैं।

ये एक शॉप का रैक हैं जहाँ पे सॉफ्ट टॉयज हार्ड टॉयज मिलता हैं खेलने का चीज मिलता हैं बच्चे लोगों को--

यहाँ पे एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रहे हैं और एक पानी यहाँ पे काला लग रहा हैं अभी तो नाव दिखाई दे रहा हैं एक नाव पे पैसेंजर में बै--